काफी साड़ी धुप है लेकिन यहाँ पर सभी लोग दुआ कर रहे हैं कुरान पढ़ रहे हैं।

है जोकि पार्क की तरह लग रहे हैं यहाँ पे फील्ड है। एक आदमी खड़ा है और छो पीर भी हैं काफी आकर्षक है ऊपर -

बहोत सारे लोग हैं जो सब्जियां ले रहे हैं।

दुकान काफी बड़ी है। इसका नाम कंचन स्वीट्स है।

यहाँ योगा प्रैक्टिस कराई जा --

बहोत अच्छी डेकोरेट की गई है रंगबेरंगी अलग-अलग तरह के फूल से भी। --

ये यहाँ पे रेसेप्शन चल रहा है।

इनके चारो तरफ मंडप बनाये गए हैं और सजावट की गई है।